और एक सामने बिल्डिंग है जो जिसका कलर निकला हुआ है।

अ चल रहा है इसके अलावा ये शायद मुझे लगता है स्कूल है।

रेड कलर की लाइट एंड व्हाइट कलर की लाइट दिखाई दे रही हैं।

मेरे सामने एक मंडप टाइप्स दिखाई दे रहा है जिसमें की लाइट जल रही और बहोत सारी--

एट नाइन टाइप से मुझे दिख रहा है एक साइड छोटे साइकिल के पहिए भी दिख रहे हैं।

और एक साइड भगवान मुझे सही नहीं दिख रहा है एक साइड माता रखी हुई है।

मेरे सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है जो कि हरे भरे अच्छे खासे लग रहे है।

और उसके सामने एक बहोत अच्छा मुझे घर दिखाई दे रहा है जो की सफेद कलर का--

मेरे सामने आज तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ व्यक्ति नहाते हुए दिखाई दे रहे जो--

उसके ऊपर एक बोर्ड लगा है जो कि स्टॉप लिखा उस पे दिखाई दे रहा है जो कि रेड कलर का मुझे दिखाई दे रहा है।